इस फोटो में एक बेकरी को दिखाया गया है।

इस फोटो में एक जिम के दृश्य को दिखाया गया है।

और कुछ जिम की मशीन पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कहीं कहीं जगहों पर पानी बरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पेट्रोल पंप पर कुछ वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक प्लास्टिक की टोकरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि गुलाबी रंग की है।

इस फोटो में एक बहुत ही सुंदर गॉर्डन को दिखाया गया है।

इसने टी शर्ट और लोअर पहन रखी है।

इस फोटो में कुछ एल_इ_डी और एल_सी_डी टी_वी को दिखाया गया है।

इस फोटो में कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं।

जिनमें से एक आदमी मछली काटते हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें एक छोटी बच्ची दिखाइ दे रही है।

इसमें एक इनवर्टर की बैटरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

और तीन लोग नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक औरत नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।